और उसके मंदिर के पीछे एक पेड़ लगा है बड़ा-सा पेड़-पौधा लगा है।

ये एक स्टेडियम है यहा पर अ स्टेडियम के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है बनी हुई है और यहाँ स्टेडियम पर एक व्यक्ति आ रहा है और एक ओरत भी खड़ी हुई है।

पर काम अभी चालू है बन रहा है मंदिर।

--घर जा रहा है साइकिल पर और एक लका बेठा हुवा है नीचे साइकिल के नीचे ओ यह पर बहुत सारे पेड़-पोधे लगे हुवे है यह पर खजूर के पोधे भी लगे है।

गुलाब भी बहुत लगे हुए हैं और यह पर खाजोर के पोधे हुवे है।

अ-अ यहां पर एक घर अंदर एक रास्ता है सीडी बानी है सीडीओं के ऊपर गमले रखे हुए है।

आइडियल प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट है और यहाँ पे बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और बिल्डिंग पर पेंट रेड कलर का पेंट पूता हुआ है।

ये रोहन चाय सेंटर या चाय-कॉफी सेंटर भी है यहां पर बहुत सारे या ये किराने का दुकान भी है यहां पर बहुत सारे व्यक्ति आते है चाय पीने और कॉफी पीने और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है।

बीडी वर्ल्ड वर्ल्ड स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पर परफॉरमेंस कर रहें है और कुछ कुछ बच्चे लेटे हुए है और कुछ बच्चे कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।